तथा आस-पास बहुत सारी हरी घास उगी है बादल मंडरा रहे है और आसमान में बहुत सारी बिजली चमक रही है।

यह एक बिल्डिंग हैं जिसमें बहोत सारी खिड़कियों पर कांच लगे हुए--

यह एक मंदिर है जिसका नाम माँ नर्मदा मंदिर है इसके आसपास बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिरस् बने हुए हैं।